दलपत सागर है यहाँ नौका बिहार किया जा रहा है यहाँ नौका बिहार करना सभी को बहुत अच्छा लगता है।

यह एक ऑफिस पार्टी है यहाँ सभी वर्कर आएंगे और पार्टी करेंगे और यहाँ सभी के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। ]

यह जगदलपुर के राजा का महल है यह महल दंतेश्वरी मंदिर के पास स्थित है यह मेन बाजार मे है जिसे --